इसमें मुझे रेत का ढेर भी दिखाई दे रहा है तथा ईट का ढेर भी दिखाई दे रहा है | इस तस्वीर में मुझे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तथा एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है | इसमें मुझे सफ़ेद कलर --

इसमें मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ बहुत सारे पेड़-पौधे हैं इसमें मुझे दिखाई दे रहा की यहाँ एक कुंड हैएवं इसमें बहुत लोग नहा रहें हैं इसमें मुझे कुछ रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

अ बहुत बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इसमें मुझें पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े भी दिखाई दे रहें हैं जिसका रंग काला है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे है तथा दीवारे दिखाई दे रही है जिसका रंग सफ़ेद है।

इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ एक कच्ची मार्ग है जिसमे दो बाइके है इसमें एक बाइक चलती हुई नज़र आ रही है तथा --

तस्वीर में मुझे एक लाल रंग तथा काले रंग की बाइक दिखाई दे रही है तथा इसमें मुझे आसमानी कलर के बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ एक सिंटेक्स साइकिल में पानी काले रंग का है जिसमे पानी भरा हुवा है इस तस्वीर में मुझे तीन रंग की पुत्ती हुई दीवार दिखाई दे रही है।

इसमें ऑरेंज सफ़ेद हरे कलर इसमें मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो पीपल का है इसमें मुझे एक तालाब भी दिखाई दे रहा है।